उसी के साथ मुझे एक बड़ी सी ला सफेद रंग की पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे प्लास्टिक का चेयर भी देखने को मिल रहा है इस तस्वीर पर।

मुझे छोट्टे छोट्टे पेड़ भी देखने को मिल रहा है इस तस्वीर पर मुझे।

मुझे इस तस्वीर पर कई सारे स्कूटियां दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लाइट भी जलाया हुआ इस तस्वीर पर दिखाई दे रहा है।

दीवारों पर फ्रेम चिपकाया हुआ भी देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक सफेद रंग का गाड़ी दिखाई दे रहा है।

ये छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

मुझे एक बच्चे के हाथ पर कॉपी और ज्योमेट्री बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

मुझे शीशा का टेबले भी दिखाई दे रहा है।

उसी के साथ मुझे एक फ्रेम भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर के अंदर कई सारे छोटे छोटे बक्से रखे हुए दिखाई दे रहा है।

ये सफेद रंग का ग्लव्स भी देखने को मिल रहा है तस्वीर पर।

फैन भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है इस तस्वीर।

मुझे इस तस्वीर पर लाइट जलाया हुआ देखने को मिल रहा है।

रंग का फ्लावर पॉट भी देखने को मिल रहा है।

एक पानी का बोतल भी देखने को मिल रहा है तस्वीर पर।